सोफा है सामने ब्लैक कलर का उसी के पीछे एक दीवार है ब्लू कलर की अ डार्क ब्लू है रॉयल ब्लू है ब्लू है पर।

मजदूर जो है मुझे दो ही- दो ही दिख रहे हैं मजदूर शन का आधा मकान बना रहे हैं शायद मकान या कोई और हो सकता है।

एक लड़का कभी खड़ा हुआ है शर्ट और पेंट डाल के आंखों में चश्मा ला रहा है हाथों में घड़ी है और सामने बगल में एक नदी है।